इस फोटो मे एक मकान दिखाया गया है जिसमें कुछ खिड़कियां लगी हुई है।

पीछे कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

पीछे एक मंदिर भी दिखाया गया है।

इस फोटो में एक डोर दिखाई गई --

और एक एल_इ_डी भी लगी हुई है।

जिसमें कुछ गिटार टंग रहे हैं।

इस फोटो मे एक मकान दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ सीढ़ी भी पड़ी हुई है।

एक द बॉडी लैब गेम लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक डाक का बॉक्स रखा हुआ है।

इस फोटो में एक चर्च दिखाया गया है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई गई है।

बाहर एक रास्ता दिखाया गया है जिस पर कुछ ट्रैक्टर और ट्रक भी खड़े हुए हैं।

इस फोटो में एक पोल दिखाया गया हैं।

नीचे और चमकीली पन्नी भी लगी हुई है।

बराबर में एक शीशे का फ्रेम बना हुआ है।

कुछ फूल भी लग रहे हैं।